ये धान रखे हुए हैं। चेयर्स लगी हुई है टेबल रखी हुई है।

जिनको जो कि फोर व्हीलर जो रहती है गाड़ीये --

वाटर पार्क का फोटो दिख रहा है जिसमें स्लाइड बने हुए हैं।

बहुत ऊँचे-ऊँचे नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं। गार्डन दिख रहा है। गार्डन में --